यह एक स्विमिंग पूल है| यहां पर कुछ पानी की स्लाइड्स दिखाई दे रही हैं यहां पर बच्चे कुछ इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां एक समुंदर है समुद्र के ऊपर एक नाव दिखाई दे रही है नाव का कलर है व्हाइट है गा व्हाइट है और कुछ विंडोज़ भी दिखाई दे रही है और एक छोटी नाव दिखाई दे--

यहां पर कुछ टायर्स दिखाई दे रहे हैं और कुछ टूल्स भी दिखाई दे रहे हैं ।

यह एक रोड है रोड के सामने बिल्डिंग दिखाई दे रही है| यहां पर कुछ गाड़ी भी खड़ी हुई है ।

यहाँ एक पानी का तालाब दिखाई दे रहा है| तालाब में कुछ पेड़ दिखायी दे रहे हैं| यहाँ पर कुछ पहाड़े भी दिखाई दे रही है| यहाँ पे कुछ पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे है।

यहां एक पार्किंग एरिया दिखाई दे रहा है यहां पे कुछ कार्स खड़ी हुई है पार्किंग एरिया के पीछे कुछ बिल्डिंग मीनार दिखाई दे रही है और उसके पीछे कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहे है।